और ये लोहे का बनाया हुआ है पीछे कुछ घर है बहोत ही बड़े बड़े--

पास में एक टैब लगे हुए हैं उनके ऊपर--

और ऊपर एक फैन लगा हुआ है सफेद कलर का--

और ऊपर कुछ रोलिंग लगी हुई है पीछे एक दरवाजे के जा रहा है वो कांच का बना हुआ है और पास में कुछ ये रोलिंग --

इस तस्वीर में एक व्यक्ति पैसे गिन रहा है और पास में काजू-किशमिस पड़ी है और पास में एक और कैनो का --

पास में बहोत ही बड़े विशाल पेड़ बनाए गए हैं और एक बोलोरो खड़ी है और आगे इधर कुछ बोर्ड लगे हुए ईनके--

तो यहां लोग रह रहे हैं इनके नीचे झोपड़ियां बनाए हुए और पास में छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

ऊपर की तरफ एक सड़क पर रेलिंग लगी हुई हैं और नीचे की तरह एक बहुत ही बड़ा डिब्बा दर्श्याया जा --

बोहोत फ्रुट्स पड़े हैं और कुछ बाल्टी में कुछ रखा हुआ है जूस वगेरा पास में एक मटका रखा हुआ --

नेट के पौने मिल जाते हैं और पीछे कुछ डिब्बे रखे हुए हैं बाल्टी और लोहे के कुछ बनाए गए हैं।